सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट बहोत ही बड़ा दिखाई दे रा--

यहां पर बहोत सारा समान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कंपनी दिखाई दे रही है कंपनी बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है।